यहाँ पे कुछ कुर्सियां भी पड़ी हैं। जो लाल रंग की हैं। इनपे कुछ लोग बैठे हुए हैं। इसके अंदर बोहोत सारी लाइटे लगी हुई हैं।

यहाँ पे बहुत सारे पेड़-पौधे हैं यहाँ पे फूल के भी पेड़ लगे हुए हैं।

इस पूल के निचे एक घर हैं। एक नदी हैं। जिसमें बहुत सारा पानी हैं।

इस दुकान के अंदर एक लाइट लगी हुई है यहाँ पे कुर्सी भी पड़ी है जिसपे एक आदमी बैठा है।